इस तस्वीर में ये दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके पास ये रिक्शा है।

कुछ ये चाबी का छल्ले कुछ ये सभी प्रकार का सामान थोड़ा दिखाई दे रहा है

बच्चे बच्चे बैठे दिखाई दे रहा है।